अच्छा है जगह घूमने के लिए सब बढ़ियाँ है। घूम रहें हैं तो पानी निकल रहा है।

आए हैं खाना खाने के लिए खाना खाके सब लोग कार्ड वार्ड का नई तो पईसा वइसा जो भी जितना होगा देंगे देके चले जायेंगे [ और क्या?

यह लाइब्रेरी जैसा बनाया गया है। एक गाड़ी खडी है। बुक की दुकान है यहाँ पे ।